सड़क आय साफ -सुथरा आय सफ़ेद-सफ़ेद दुइ ठन गाड़ी खड़ी खड़ा आचे और ई बाटे खिंडीक पेड़-पौधा बले आय सुन्दर दखसि आचे।

पानी खूब सन पानी निकाल बा बीती फौवारा बले आय ऊपर नीचे होइस आचे लाइट जलसि आचे बग-बग नाय--